आदमी दिख रहे है हाशमान दिख रहा है लाइट जल रही है|

आशमान दिख रहा है| लाइट दिख रही है| फोर व्हीलर दिख रही।

इसमे आदमी दिख रहे हैं। झंडे दिख रहे है। पेड़-पौधे दिख रहे हैं।